दुकान का नाम है ब्राइट लाइन ड्राई क्लीनर्स फाइन डायर्स एंड ड्राई क्लीनर्स और उस पर लिखा है यहाँ प्रतिष्टन है पच्चीस वर्ष पुरानी ब्राइट लाइन --

ये एक लॉर्ड कृष्णा ग्रुप ऑफ़ इंस्टीटूशन है। ये बोहोत बहु खूबसूरत बिल्डिंग है।

ये हरे कलर की बिल्डिंग है बेस्ट बोरिंग सनरल पटना में ये बिल्डिंग है।

ये दुकान बर्तनों की है इस दुकान के अंदर बहोत सारे बर्तन रखे हुए है बर्तन में से कुकर बहोत ज़्यादा रखे हुए है तीन कुर्सियां नजर आ रही है।

बिल्डिंग में भी भगवान की मूर्ति रखी हुई है मंदिर के अंदर कुछ बूढ़े बैठे हुए है मंदिर के साइड में दान पात्र --